यहां पर मशीन से खुदाई हो रही है एक सफेद कलर की कार खड़ी है किसी खेत या बंजर जमीन में--

ऊपर ब्लू कलर के डिब्बे रखे हुए हैं दो चेयर --

एक आदमी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर ए_टी_एम भी है।

ये कोई स्टेशन दिखाई पड़ रहा है जहां पर झुके ही लिखा हुआ है।

एक और ट्रैक क्रॉस कर रही है जोकि यही स्टेशन है।

गेट पर गेट नंबर चार लिखा हुआ है पीले कलर से गेट पोता हुआ है लाइटिंग भी लगी हुई है गेट पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

खड़ा हुआ हैं वरमाला लेकर और पिंक कलर से पीछे फूल सजे हुए हैं एक पीला कुर्ता पहने हुए बाजू में आदमी खड़ा हैं।

डिजाइन बनी हुई है सामने से कुछ लाइट आती हुई दिखाई दे रही--

और वो नाचने की मुद्रा में दिखाई दे रहा--